यह एक सड़क है। यह सड़क काफी बड़ा है। यह सड़क पर एक गाडी आते हुई नजर आ रही है। यह सड़क किनारे बहुत ही बड़ा ग्राउंड है।

इस ग्राउंड में बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर और भी सारे आदमी आते होंगे।

सुंदर-सुंदर घर दिखाई दे रहे हैं । यहाँ पेड़-पोधे भी दिखाई दे रहे हैं । यह घरो में बोहोत से आदमी रहते होंगे । यह घर क --

यह जिम क्लास है । यह जिम क्लास काफी बड़ा है । यह जिम क्लास में बैठने की बेंच लगी गई है । यहाँ पर बोहोत सारे लडका --

राशन की दुकान है यहाँ पर बहुत सारे बोरो में सामान रखे गए हैं यहाँ पर आटा चावल चीनी दाल --

आलू प्याज लहसुन मिर्ची अनेक प्रकार के सामान रखे जाते हैं।

गिराए हुए है। ये बोहोत सारे बालो भी गिराए हुए है। यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी भी गिराए हैं।

यह कुर्सी कुर्सी पर बैठ कर यहाँ पर बाल बन काटते हैं एवं दाढ़ी बनाते हैं नाखुन भी छु --

यह जंगलो में बोहोत सारे जंगली जानवर एवम पक्षी रहते होगे । यहाँ पर--